यहाँ हॉल दिख रहा है हॉल में दोनों तरफ लाइन से बहुत सारी स्कूटी रखी हुई दिख रही है।

जिसमे शेड लगे हुए हैं ओर जिसमे दरवाजा दिख रहा है ।

सामने बोर्ड लगे हुए हैं। मंदिर जाने का रास्ता है और ऊपर भी बोर्ड लगे हैं और कांच लगे हुए हैं खिड़किया दिख रही हैं।

पीछे मकान बने दिखे हैं और एक गोल शेड बना हुआ है और पीछे आसमान दिख रहा है।

और एक गेट दिख रहा है और एक येलो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर कांच लगे हुए है।